यह किसी गार्डन का फोटो है।

यह किसी बड़े से घने जंगल का दृश्य है।

और उसके पीछे बहुत सारा घना जंगल भी है।

और मस्जिद को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

और उसके ऊपर लोहा भी लगाया गया है।

और सामने में ही दीवार पर एक बाबा का फोटो लगा है।

एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं।

और उसके जस्ट नीचे ही ग्रीन कलर से वेज रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है।

और इस बिल्डिंग के सारे खिड़कियों में ए_सी भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़े से हॉल में एक मीटिंग हो रहा है।

यह एक मस्जिद का दृश्य है।

यह किसी बड़े से घर का फोटो है।

और यह सब अलग अलग कलर का है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

यहां पर तीन लोग कार को खरीद कर उसकी पूजा भी कर रहे हैं।

और अंदर में शीशे के अंदर कुछ कपड़े वगैरह भी दिख रहे हैं।

यहां पे कुरकुरे लेज वगैरा मिलता है।

और इसके बगल में ही दो बड़ी फ्रिज भी रखी है।

उसके ऊपर ही एक बड़े से बैनर में ब्लू कलर से सुजुकी लिखा हुआ है।

और उसके जस्ट पीछे ही एक बड़ी सी टावर भी है।

और सामने में एक ब्लू कलर का रखा हुआ है।